सोफा दिखाई दे रहा है | नीचे वाइट कलर की

एक पलंग पे जेंट्स सोता हुआ दिखाई दे रहा है उसके कुर्ते में

भी दिख रही है तार-ुउर भी दिखाई दे रहे हैं बड़े-बड़े पेड़-पौधे भी दिख रहे हैं और बहुत दूर मकान पर बने हुए दिखाई दे रहा है। ए --

दिखाई दे रहा है बहुत सारे निची हरे कलर का नीले कलर का फर्श भी दिखाई दे रहा है बहुत सारे जेंट्स दिखाई दे रहा है रेड कलर की कुर्सी दिखाई दे रही है।

बड़े-बड़े पेड़-पौधे दिखाई दे रहा है उनमें पत्तियां दिख रही है लाल दिखाई दे रहे है तार भी दिख रहे हैं | एक साइड मे एक मकान भी दिख रहा है वाइट कलर का। ऊपर --

में दिखाई दे रहे हैं बहुत सारे जेंट्स भी दिख रहे हैं बड़े-बड़े पेड़-पौधे दिखाई दे रहे हैं उनमें पत्तियां भी दिख रही हैं।

चौड़ी चौड़ी सी पाटिया भी दिखाई दे रही है ऊपर बदल भी दिख रहा है वाइट कलर का --

दिख रहे हैं छोटे-छोटे पत्थर उन भी दिखाई दे रहे हैं कुछ खम्बे भी दिख रहे हैं बड़े --

दिखाई दे रहा है दोनों बैठ कर खुले हुई दिखाई दे रहा है

वन मे से मंदिर टाइप में दिख रहा है उसमे वाइट कलर का पेंट हो --

दिख रहे हैं और बड़े बड़े पेड़ पौधे दिख रहे हैं | छोटे छोटे भी दिखाई दे रही है और --

पास मे बहुत सारे लेडिस दिखाई दे रही है ऊपर बदल भी दिख रहा है रंगीन कलर --

दिखाई दे रहे हैं | बाइक भी दिखाई दे रही हैं |

पाइप भी दिखाई दे रहा है निसैनी भी दिख रही लाल-लाल मिट्टी दिखाई दे रही है।